ये गिरिजाघर है यहां चर्च है इसने इसमें नीले रंग के कपड़े पहन रखे है और यहां पे ये माइक ले रही है।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

पाइप सी भी दिख रही है और यहां पे आप देख सकते हो लाइट भी लगी हुई है।

बुद्ध जी की तस्वीर भी देख रही है यहां पे --

सॉस रखा हुआ है परचून की दुकान है ये यहां पे--

ये यहां पे देख सकते हो परचून की दुकान है यहां पे बच्चों के खिलौने भी दिख रहे हैं यहां पेन वगैरह भी रखे हुए हैं।

कपड़े पहन रहा है नीले रंग के कपड़े पहन रहा है और इसने सफेद रंग का मास्क मुंह पे लगा रखा है।

यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं गुब्बारे।

साइकल दिख रही है यहां पे ये पहिये रखे हुए हैं और यहां पे--

और यहां पे गमले रखे हुए हैं गमलो में पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये--

यहां पे बहुत सारे लैपटॉप रखे हुए हैं और यहां पे ये एक मेज है यह मेज शीशे की है।

ये देख सकते हो यहां पे आसमान दिख रहा है और यहां पानी पानी दिख रहा है।